लाल कलर का वह टाइल्स भी लगी हैं।

सब औरतों के मुंह को चेहरे को ब्लर किया हुआ है।

इस फोटो में कुछ बच्चियों कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं।

यह फोटो किसी दुकान के बाहर से लिया गया है।

और एक दो व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रही है साथ में कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं।

बल्ब जलाया दिखाई दे रहा है।

पीछे बड़े सा एस लिखा हुआ है।

और एक आधा व्यक्ति दिख रहा है।

तीन तकिए लगे हैं पीछे कूलर और बैग वैग कुछ सामाने भी रखे हुए हैं पीछे--

जिसमें पीछे लिखा है वन आयरन और कुछ गुम्बाडे लगे हुए हैं।

बाहर लोड है और कुछ बल्बें जला रहे हैं पीछे बड़े अक्षरों में कुछ नाम लिखा --

एक बड़ा पोस्टर भी लगा है जिस पर दीपक स्कूल ड्रेस लिखा हुआ है।